libreoffice base पर इस spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम सीखेंगे कि
कैसे sql view में queries लिखें
कैसे order by वाक्यांश का इस्तेमाल करें
joins का इस्तेमाल कैसे करें
aggregate functions का इस्तेमाल कैसे करें
group by वाक्यांश का इस्तेमाल कैसे करें
और built इन functions का इस्तेमाल कैसे करें
चलिए sql queries लिखने के बारे में और अधिक सीखते हैं
इसके लिए अपना परिचित library database खोलते हैं
अब बाएँ panel पर queries सूची पर click करें
और फिर create query in sql view पर click करें
पहले देखते हैं कि कैसे हम एक query के परिणाम को क्रमबद्ध कर सकते हैं
और निम्न उदाहरण को देखते हैं:
cambridge या oxford द्वारा प्रकाशित उन सभी पुस्तकों के book title और author की सूचना प्राप्त करिये
और आरोही क्रम में book titles का अनुकरण करके उनको publisher के आरोही क्रम में सूचीबद्ध करिये
और यहाँ query है:
select publisher title author
from books
where publisher in cambridge oxford
order by publisher asc title asc
अतः ध्यान दीजिये कि column नामों से क्रम को दर्शाने के लिए हमने order by वाक्यांश का इस्तेमाल किया है
साथ ही अल्पविराम characters पर भी ध्यान दीजिये जो और क्रमबद्ध करने के लिए तथा अधिक columns को जोड़ने में मदद करता है
और आरोही या अवरोही क्रम को स्पष्ट रूप से बताने के लिए हम प्रत्येक column के आगे केवल a s c या d e s c type कर सकते हैं
अब file menu bar के नीचे run query icon पर click करते हैं
यहाँ पहले publisher से क्रमबद्ध है और फिर book title से क्रमबद्ध पुस्तकें हैं
अब अपनी अगली query पर चलते हैं
अब book titles की एक सूची book issue dates के साथ प्राप्त करते हैं जो अभी तक सदस्यों द्वारा वापस नहीं की गयी हैं
चूँकि टाइटल्स शीर्षक books table में हैं और book issue date booksissued table में है
हमें किसी तरह से इन दोनों को जोड़ना होगा
अतः हम इन दोनों tables को जोड़ने के लिए join कीवर्ड इस्तेमाल करेंगे
और हम इन दो tables को जोड़ने के लिए समान column bookid का इस्तेमाल करेंगे
अतः query है:
select b title i issuedate i memberid from books b join booksissued i
on b bookid = i bookid
from वाक्यांश में अक्षर b और i पर ध्यान दीजिये
इन्हें aliases aliases कहते हैं जो बेहतर पठनीयता के लिए या तो विवरणात्मक या केवल एक अक्षर हो सकते हैं
ध्यान दीजिये कि bookid column दोनों tables में हैं
अतः किसी भी भ्रम से बचने के लिए names कॉलम्स names को निर्दिष्ट या योग्य करने के लिए aliases का उपयोग करेंगे
ठीक है अब ध्यान दीजिये कि हमने from वाक्यांश में join कीवर्ड का इस्तेमाल करते हुए दो tables को जोड़ लिया है
और हमने जोड़ने के लिए bookid column को लिखकर स्पष्ट किया है: on b bookid = i bookid
अतः चलिए अब अपनी query रन करते हैं
और हम पुस्तकों और उनके issue date की एक सूची देखते हैं और यह कि checkedin स्थिति; checked इन नहीं है
ठीक है यह भी ध्यान दीजिये कि परिणाम में केवल memberid है यह ज्यादा लाभदायक नहीं है
अतः हम member names कैसे दर्शायें जो members table में हैं
सरल है; हम members table को अपनी query से निम्न प्रकार से जोड़ते हैं:
select b title i issuedate i memberid m name
join booksissued i on b bookid = i bookid
where checkedin = false
अतः members table और memberid column को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किये गये दूसरे जोड़ पर ध्यान दीजिये
चलिए query रन करते हैं
यहाँ member names पुस्तकों के साथ हैं जो उन्हें जारी की गयी हैं
अगला aggregates और grouping के बारे में सीखते हैं
how librarry के सभी सदस्यों की गिनती कैसे प्राप्त कर सकते हैं
यहाँ एक query है:
select count * as total members from members
अतः यहाँ count पर ध्यान दीजिये
इसको aggregate function बोलते हैं क्योंकि यह records के समूह का मूल्यांकन करके केवल एक value set है
साथ ही हमने एक alias उपनाम total members भी जोड़ alias है
अब query now करते हैं
अतः यहाँ base ने सभी 4 सदस्यों के records का मूल्यांकन किया और संख्या 4 वापस की जोकि सदस्यों की कुल गिनती है
aggregate functions के कुछ और उदाहरण हैं sum max और min
अब grouping सूचना के बारे में सीखते हैं
कैसे how प्रत्येक प्रकाशक के लिए पुस्तकों की गिनती प्राप्त कर सकते हैं
यहाँ query है:
select publisher count * as number of books from books
नये group by वाक्यांश पर ध्यान दीजिये
अतः हम प्रत्येक publisher के लिए records को समूहीकृत करने के लिए publisher और books की संख्या तथा group by चुन रहे हैं
अब query now करते हैं
उनके सामने प्रत्येक प्रकाशक का names और पुस्तकों की संख्या पर ध्यान दीजिये
आगे sql में functions के इस्तेमाल के बारे में सीखते हैं
functions statements वक्तव्य होते हैं जो एक value वापस करते हैं
उदाहरणस्वरुप current _ date आज की तारिख date है
अतः सभी पुस्तकों के टाइटल को सूचीबद्ध करते हैं जो सदस्यों द्वारा वापस नहीं की गई हैं
और query है:
select b title i issuedate i returndate
from books b join booksissued i on b bookid = i bookid
where checkedin = false and returndate <current _ date
अतः current _ date function के इस्तेमाल पर ध्यान दीजिये
हम उन पुस्तकों को प्राप्त कर रहे हैं जिनकी return date आज की तारिख से पहले है
चलिए query रन करते हैं
और यहाँ पुस्तकें हैं जो वापस नहीं की गई हैं
hsqldb द्वारा प्रदान किये गये functions की सूची के लिए इस पर जाएँ:
यह website देख कर पूरा यूज़र guide देख सकते हैं
यहाँ एक नियत कार्य है:
निम्न के लिए अपनी sql queries लिखिये और जाँचिये:
1 library में सभी पुस्तकों की गिनती प्राप्त करिये
2 प्रत्येक author द्वारा लिखी गयी पुस्तकों की गिनती प्राप्त करिये
3 सदस्यों के names और उनके phone numbers की सूची प्राप्त करिये जिन्हें पुस्तकें आज ही वापस करनी है
4 समझाइये कि यह query क्या करती है
from books
इसी के साथ हम libreoffice base sql view में अधिक queries के इस tutorial की समाप्ति की ओर आ गये हैं
संक्षिप्त में हमने सीखा कि:
कैसे sql view में queries बनाएँ
order by वाक्यांश का इस्तेमाल कैसे करें
joins का इस्तेमाल कैसे करें
aggregate functions का इस्तेमाल कैसे करें
group by वाक्यांश का इस्तेमाल करें
और built इन functions का इस्तेमाल कैसे करें